यही चित्र में एक पुरानी बिल्डिंग दिख रही है।

बिल्डिंग के आगे सारे पेड़ है।

बिल्डिंग के दो खिड़कियां ओपन है बिल्डिंग के आगे दो फूल भी है।

और वह ऑफिस में तीन चेयर्स भी दिख रहे हैं।

और ऑफिस में एक लड़की भी बैठकर है।

बुक शॉप के आगे एक आदमी बैठकर है और शॉप के आगे रकम रकम किताबे जोड़कर रखे है।

इ चित्र में सारे पेड़ दिख रहे हैं।

अभी स्नैक्स आइटम भी दिख रहा है।

दीवाल पर मेनू कार्ड भी चिपका कर रखे हैं।

तीन रैक्स दिख रहे हैं।

बहुत सारे केक्स दिख रहे हैं।

लाइट भी दिख रहा है।

उनके दाहिने तरफ एक लाल भी ब्लू कलर का टब दिख रहा है अभी वॉच भी दिख रहा है।

पोस्ट ऑफिस के आगे चप्पल भी दिख रहा है।

टेबुल के ऊपर बहोत सारे कपड़े दिख रहा है।

एक छोटा सा ब्रिज भी दिख रहा है।

बाए तरफ रैक में सब्जी जोडकर है और सीधे रैक में शाम्पू जोडकर है।

ये चित्र में एक किचन दिख रहा है।

किचन के अंदर एक शेफ दिख रहा है।

बहुत सारे आदमी कैमरा फोंस लेकर और उसको शूट कर रहे हैं।

बहुत सारे कुर्सियां भी दिख रहे हैं।

ग्राउंड में बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं।

इस चित्र में एक ग्राउंड दिख रहा है।

रेस्टोरेंट में बहुत सारे फूड और टेबल है।

बहुत लोग और कुर्सियां पर बैठ के हैं।

ये चित्र में एक कक्षा दिख रही है और बहुत सारे बेंचा है बेंच के ऊपर लड़के और लड़कियां बैठकर है।

एक फैन भी दिख रहा है।

एक लाल कलर का टब दिख रहा है।

ये चित्र में एक मेन रोड दिख रहा है।

एक करेंट पोल भी दिख रहा है।

भुट्टे ग्रीन कलर में दिख रहे हैं।

मट्टी भी दिख रही है।

पाटी के झाड़ा भी दिख रहे हैं।

और खिड़कियां भी दिख रहे हैं।

दुकान लाइटिंग से चमक रहा है।

कपड़े नीचे सजाकर लगकर है।

और बोर्ड पर श्री कृष्णा ज्वेलर्स बोल कर हैं।

एक घड़ियाल भी दिख रही है।

बिल्डिंग के आगे एक गार्डन दिख रहा है।

एक लाइट भी दिख रहा है और पेड़ भी दिख रहा है।

लड़के के आगे एक दरवाजा खुला है।

बिल्डिंग के ऊपर बादल भी दिख रहा है।

बिल्डिंग के दाहिने और बाएं तरफ एक पुरानी जैसी बिल्डिंग भी दिख रही है।

ई चित्र में एक सिनेमा थिएटर दिख रहा है।

प्लास्टिक के फ्लावर्स भी दिख रहे हैं मॉल लाइटिंग से चमक रहा है।

ये चित्र में एक दुकान दिख रहा है।

अनार सेब केला पाइनएप्पल तरबूज जैसे फ्रूट्स दिख रहे है।

एक रैक में थम्स अप स्प्राइट बीस का दिख रहा है।